पंखे वगैरह भी छत्त पर लगी हुई है और लाइटिंग का भी अलग-अलग फॉक्स आ रहा है कलर वाला और चारों तरफ फूल ही फूल लगे हुए--

गाने बज रहे हैं और व्यक्ति खड़े हुए सुन रहे हैं। कुछ व्यक्ति कुर्सियों पर--

बच्चे एवं बच्चियाँ स पढ़ने के लिए जा रहीं हैं। स्कूल के बा एक महाविद्यालय के बाहर एक हरियाली वाला --

टिफिन के अंदर बॉक्सो में खाना रखा हुआ है और उसमें काजू वगैरा सामान रखा हुआ --

तीन बॉक्स चार बॉक्स और कुछ कांच की प्लेटो में भी सामान रखा हुआ खाने का और उसकी टेबल भी टाइलसो की है।

इस शोरूम में चॉकलेटे वगैरा सभी डेली यूज होने वाला सामान मिलता है।

और स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं और स्कूल के बाहर बेनर टंगी हुए हैं और चारों तरफ आर.सी.सी. है।

डलिया में खाने का सामान रखा हुआ है।

सीढ़ियों पर पानी सब फैला हुआ है और दुकान के अंदर लाइटें जल रही है दुकान के जमीन पर टाइल्से लगी हुई है।

यह एक मैदान माय ब्राँच खरी हुए हैं और एक चोत्तरे पर एक विकती घोड़े पर बैठ कर हाथ में तलवार लिए हुए बैठे ही --

के रोड पर हरियाली के पौधों की छाया आ रही है।